लड़के लाल कलर के कपड़े पहने हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बहुत बड़ा मकान दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक तलाब जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां एक मकान जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

ये एक मार्केट जैसा दिखाई दे रहा है।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

मंदिर जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

मकान जैसा दृश्य दिखाई दे--

ये एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है।

ये एक वॉटर पोल जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है।